पेड़ दिखाई दे रहे है जो की सुख चूका है।

यहाँ मुझे एक जगह दिखाई पड़ती है जहाँ पर चेकदार जमीन है जोकि भूरी सफेद और काले रंग की है। यहाँ पर --

यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है मँगो फ्रूटी फ्रेश अण्ड जूस --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मुझे कुछ गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो भूरे रंग के हैं। इस पे हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहें हैं।

तथा आदमी ने आसमानी कलर की कमीज को पहन रखी है यहाँ पर एक औरत भी बैठी है जिसने आसमानी कलर का कुर्ता --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मुझे एक दुकान दिखाई पड़ती है जिसमे बोहोत सारा ग्रोसरी का सामान लगा हुआ है। इसकी छत पर ये भूरे रंग का पंखा लगा है यहाँ पर एक सफ़ेद कलर की मेज दिखाई पड़ती है जिसमे --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक लंबी इमारत दिखाई दे रही है जोकि पीले और सफेद रंग की। क्या ये इमारत एक चर्च है ?

इसपर प्लस का ऊपर साइन बना हुआ है इसके बाहर कुछ लोग दिखाई पड़ते है यह तस्वीर --

एक ने सफ़ेद कलर की कमीज तथा दूसरे ने हल्की आसमानी रंग की कमीज पहनी हुई है। इस घर के अंदर --

जैसा कि मैं इस तस्वीर पर देख पा रही हूँ यहाँ पर सफ़ेद और ग्रे कलर की एक दीवार है जिसपर पुरानी कलाकृतियाँ बनाई गई है।

ये काले रंग के पत्थरों को दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे कुछ सरिया दिखाई पड़ रही है सरिया से --

जिम से लगा हुआ रिलेटेड है। यहाँ पर रॉड --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ य राजकीय औद्योगिक पक्शिक्षण संस्थान अमरोहा का है।

इसपे पीले कलर की सील फॉलिंग दिखाई देती है। यहाँ पर --

बच्चे कुछ क्राफ्टिंग का वर्क कर रहे हैं।

जैसा की मै देख पा रही हूँ यह शाम का समय है यहाँ पर एक बड़ा सा पिलर --

दिखाई पड़ता मालूम होता है जोकि सरियों से बना हुआ है। यहाँ पर हरे कलर की घासें दिखाई दे रहीं हैं।

जैसाकि मै देख पा रही हूँ की यह एक ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फीटर है इसकी दिवार भूरे रंग की है। यहाँ पर एक छोटा-सा एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगाया हुआ है।

यहाँ पर एक दरवाजा है जो जालीनुमा है तथा वह नीले रंग का दिखाई पड़ता इसकी दीवार दूसरे तरफ --

सफ़ेद है तथा यह एक शटर दार दुकान मालूम पड़ती है यहाँ पर कुछ झाड़ू भी --

तथा क्रीम कलर की पटियाँ बनी हुई हैं श्रृंगार दान के उपर कुछ सामान भी रखा है।

कपडे पहने हुए हैं तथा यहाँ पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है। बच्चे दूर दूर तक --